की बहत सजावट की गई है चेयर सिंडिया नजर आ रही है। यहाँ कुछ फूलों के सजावट की गई--

यहाँ कुछ लिखा हुआ फिर दिखाई दे रहा है यहां मुझे एक ढाबा नजर आ रहा है यहां मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है ।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है और ए मुझे व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का--

यह एक गेट दिखाई दे रहा है मुझे बहुत सारी सजावट दिखाई दे रहा है फिन टीवी लगी हुए दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है गार्डन में यहां कुछ लिखा था दिखाई दे रहा है और यहां मुझे बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं और गेट बना हुआ दिखाई दे रहा पौधे का।